मैदान के बगल में दो घर दिख रहे हैं।

उधर की दीवार के रंग लाइट ग्रीन कलर के हैं जहां पर पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं।

ऊपर सीलिंग में एक फैन भी है।

एक बड़ा सा रस्ता बीचो बीच जा रहा है मेन एंट्री के बीच।

इसमें बड़े बड़े अक्षरों में बाजार इंडिया फैशन के साथ बचत भी लिखा हुआ है।

उस बिल्डिंग का कलर पीला और सफेद रंग का है।

उसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और बीच में एक रस्ता जा रहा है।

ऊपर दिए गए दृश्य एक नर्सरी का है।

छवि के अनुसार बहुत सारे कप्स हैंग करके रखे गए हैं।

इसमें चंद्रपाल लॉजिंग लिखा हुआ है।

बाहर बहोत सारे बोड भी हैंग कर रखे हैं।

सो में एक बड़ा सा मैदान है।

इसके बीचो बीच एक रस्ता दिख रहा है।

बाहर बहुत सारी पार्किंग में बाइके दिख रही है।

छवि के अनुसार ये एक आइडिया का स्टोर है।

दीवारों का रंग पीला है।

ऊपर दिखाये गए छवि एक होटल डरुव है।